और आस पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और बहोत सारे पेड़ हैं।

यहाँ पे काफी बड़ा टावर खड़ा है टावर में कुछ सफ़ेद कलर के लगे हुए सिगनल के वो हैं यहाँ पे मोबाइल मोबाइल का ये टावर हैं।

और उधर घास दिखाई दे रहा है काफी हरा हरा जगह दिखाई दे रहा है उधर का और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद बादल छाए हुए है।

यहां पर एक खेल का मैदान है जिसमे काफी सारे लोग इकट्ठे हैं इधर-उधर चल घूम रहे हैं और दो खंभों में लाइटे जल रही हैं ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।